और यहाँ आस-पास गौतम बुद्ध की तस्वीरें लगी हुई हैं जिसमें उनके बारे में लिखा हुआ है बगीचे में बड़ी ही हरियाली बनी हुई है।

एक किले के भीतर से हम द्रश्य देख सकते है यहाँ लम्बी लम्बी दो खिड़कियाँ दिख रही है।

किसी जगह पर कोई प्रसंग हो रहा है जहां पर कुछ कुर्सियां रखी हुई है और कुछ सोने के लिए शयन --

बगीचे के अंदर का यह दृश्य है बगीचे के अंदर एक छोटी सी जगह बनी हुई है जो की यहाँ पर लोग दिख रहे हैं।

कुछ साधन यहां साइड में रखें भी हुएं हैं और यहां हम एक बड़ी सी इमारत देख सकते हैं जोकि तीन मंजिला है और यहाँ चहल-पहल बनी हुई है।

किसी बगीचे में हम दो बगुलों को देख सकते हैं। इसमें से एक स् पूरा सफेद है और एक थोड़ा सफेद है।

किसी से शैक्षणिक स्थल पर दो रिक्शा हम देख सकते हैं जो कि अभी उपयोग में है परंतु यहां कोई भी मनुष्य हमें नहीं दिख रहा है।

अभी एक सडक पर रखा हुआ है सडक पर चहल पहल बनी हुई है लोगो कि और यह रिक्शा अभी खाली रखा हुआ है।

खेल रहै हैं और बगीचा बड़ा ही हरा भरा है और यहां चहल-पहल बनी हुई है लोगों की और यहाँ बहुत सारे साधन रखे हुए हैं।